और अपनी सवारी की राह देख रहे हैं।

जैसे कि आइसक्रीम

अभी ये स्टेडियम पूरा खाली दिखाई दे रहा है।

तो हमें यहां एक छवि दिखाई दे रही--

और रास्ते के सामने पड़े हुए एक कॉम्प्लेक्स --

दिख रहा है जिसे बहोत सारी लाइटों से जगमगा दिया गया है शाम का समय है।

और यहा थोड़ी बहोत हरियाली भी हमे दिखाई दे रही--

तो हमें इस छवि में दिखाई दे रहा हैं कि यहाँ पर मटके की दुकान है।

और थोड़े बहोत मिट्टी के बने झूमर भी हमें दिखाई दे रहे हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी कि भारत सरकार की एक ऑफिस दिखाई दे रही--

एक बड़ा सा रिसोर्ट दिखाई दे रहा हैं।

यहां अभी कोई इंसान दिखाई दे नहीं रहा।

इस कॉम्प्लेक्स में दो तीन दुकानें भी लगी हुई हैं।

और यहां मंडप भी बांधा गया हुआ है।

यहां हमें बहोत सारे ग्राहक भी दिखाई दे रहे हैं।

तो हमें इस छवि में एक टेनिस दिखाएगा हुआ है।

यहां बच्चो से लेकर बूढ़े लोग भी पूजा करने के लिए आए हुए हैं।